और सभी एक साइज के है किसी पे तीन दिन रखा हुआ हे कोई एक ही रखा हुआ हे कोई दो रखा हुआ है ओण यहाँ पे टोटल तीन दू पांच चार नव --

यहाँ पे बाल कटिंग का दुकान है।

ये जिम है यहाँ पे हैवी -हैवी डम्बलस रखे हुए हैं |

यहाँ पे दो नीलगाय है और हरी-हरी घास है एक गाय इधर देख रही है एक गाय घास खाने के लिए जा रही है।